पानी की बोतल पड़ी है पीछे पेपर पड़ी है यदि दीवार के पास मुझे सामान पड़ा है परदे लगे है सामने।

दो आदमी जा रहे है एक महिला जा रही है और बहोत बड़े बड़े पेड़ लगे हुए है।

और ऊपर चार्ट चिपके हुए एस_एस_सी एकेडमी के एस_एस_सी सी_जी_एल वगैरा होता है।

एक आदमी खड़ा है बाहर मोटरसाइकिलें खड़ी है यहां पर बीच मे कुछ सर्कल बना हुआ है उसके अंदर कुछ छोटे छोटे पौधे लगे हुए है।

पेड़ के इधर और उधर साइड बहुत सारी कुर्सिया पड़ी है काले कलर की इधर कोने में कुछ --

इस तस्वीर के अंदर बहोत सारा पानी दिखाई दे रहा है पानी के अंदर बहोत बड़े बड़े पत्थर पड़े हैं।

और सामने गहरे पेड़ दिखाई दे रहे हरे हरे उपर हरी पत्तियां लगी हुई हैं पेड़ों के बीच में से ये पानी आ रहा है।

सामने एक सफेद कलर का कुछ मशीन पड़ा है ऊपर--

इस फोटो के अंदर सामने दुकान है वहाँ पर तरह तरह की कोल्ड्रिक्स की बोतलें कुछ पॅकिट वगैरा मिलते हैं।

सभी सेम पोज में खड़े हैं हाथ ऊपर किए हुए हैं किसी के शूज़ पहने हुए हैं तो किसी के सॉक्स पहने हुए हैं।